जो की शायद एक मोबाइल शॉप लग रही हैं इसमें कुछ कवर्स वगेरा भी टंगे हुए हैं।

ये एक जिम है जिमसे की नज़र तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है लेकिन काफी सारी मशीने दिखाई दे रही हैं पेट कम करने की।

ये एक स्ट्रैट रोड नज़र आ रहा है जोकि रेड कलर का है। सामने एक डी पी नज़र आ रही है।

साइड काफी सारे लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं।

आगे इसमें कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। जो कि ग्रीन कलर की लगी हुई है।

ये एक मार्केट वाला भीड़-भाड़ वाला इलाका सा दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारी भीड़ भी लगी हुई है और ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं।

आगे कुछ ग्राउंड टाइप में बना हुआ है जो कि बहोत अजीब सा लग रहा है। पीछे की साइड में एक बिल्डिंग बनी --

साइड का व्यू क्लियर नहीं समझ आ रहा है।